शॉप है जिसपे लिखा है कुमार फर्नीचर हाउस --

जो कि वुडन वुड स्टील एंड प्लास्टिक फर्नीचर बेचता है।

यहां पर बहुत सारे ऑफिस टेबल भी मिलता है यहां पर चेयर रेस्टोरेंट भी--

मैट मैट्ट्रेसेस भी मिलते हैं यहां पर बहुत अच्छा फर्नीचर मिल जाता है।

म अच्छा व्यू रहा है यहाँ पर हमें पुलिस देखने को मिल रही है और हमें ये बिल्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर हमें --

ब्यूटीफुल नजारा है जहां पर ये लड़का पर खड़ा है।

अ ब्रिज जैसे जिसपे खड़ा है यह बंदा--

हमें ट्रीज नजर आ रहे हैं यहां पर हमें पानी नजर आ रहा है।

बाकी की जो बंदे हैं चार वो बैठे हुए--

यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यह रंग बारंगीन टेंपल ।

ये बहोत ही खूबसूरत है इसके पीछे हमें बड़ा ट्री भी नजर आ रहा है।

इस पिक में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें हमें बहुत ही अच्छा वेव नजर आ रहा है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है।

ये बंदे तीन है इन्होंने हैंडलॉक्स किए है।

मोबाइल भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है।

आप देख सकते हैं डस्टबिन हमें दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं वहां पर एक गाड़ी है जो रुकी हुई है वाइट कलर की।

हमें दूर दूर से ट्रीज भी नजर आ रहे है इस पिक में--

के लोग दिखने को मिल रहे हैं जो रिसेप्शनिस्ट --

आप वहां की फ्लोरिंग देख सकते हैं वो ब्लैक एंड वाइट है।

एंड यहां पर लाइटिंग सिस्टम भी बहुत ही खूबसूरत है।

यहां पर बहुत ही अच्छी मशीनस लगी हुई हैं बहुत ही हैवी मशीनस लगी हुई हैं।

यहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारे मशीनस लगी हुई हैं इधर आप देख सकते हैं बहुत सारी--

आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हमें बहुत ही--

जहां पर हमें देखने को मिल रहा है ये वॉश बेसिन ।

हमें यहां पर दिखाई दे रहा है यह पोल ए जो महिला है का कुछ लिख रही है बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है।

यह बहुत ही अ अच्छा अ ज्वेलरी डेकोरेटेड है।

इस पिक में मुझे चेयर्स देखने को मिल रही है जहां पर ये वाइट कलर की चेयर्स है।

ऑफ़ फ्लोरिंग देख सकते हैं जो कि सीमेंटेड है वो लाइंस क्रास की गई है।

इस पिक में हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है जहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें--

दिख रहे हैं यहाँ से लोग जा रहे हैं।

यहां पर ये झूले कितने खूबसूरत तरीके से लगे--

इस पिक में हमें नजर आ रहा है ये अ दो बंदे बैठे हैं।

ये आप देख सकते हैं इस पिक में मुझे एक खूबसूरती--

नजर आई कि इसमें हमें हर एक वैरायटी के--

आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत पिक है जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर--

बहुत सारे वैरायटी की चीजें मिलेंगी आपको इधर पे आप देख ले यहां पर बहुत सारे आइटम्स आपको मिलेंगे।

आप देख ले कि इस पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है कि ए--

स्कूटी रेड कलर की है हमें नेट डोर दिख रहा है आप देख सकते हैं इसकी जो स्टेयर्स हैं वहां पर ग्रीन कलर मैट --

आप देख सकते हैं इस अ पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर बहुत सारी वैरायटी के--

आप देख सकते हैं यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं चेयर्स यहां पर हमें देखने को मिल रहा है बॉटल्स --

यहां पर हम सब कुछ देख रहे हैं फ्लोरिंग हर एक वैरायटी --

बहुत सारा अच्छा व्यू आ रहा है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है यहां पर एक --

और पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है यह एक ब्रिज के ऊपर है इसने चप्पल पहनी हुई है।

आप देख सकते हैं पीछे से ट्रीज का व्यू भी आ रहा है हमें क्लाउड्स भी दिखाए--

इस पिक में हमें नजर आ रहा है कि एक बहुत ही खूबसूरत पिक है जहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें--

चेयर नजर आ रही है डेस्टॉप नजर आ रहा है।

यह जो पिक्चर है यह हमें बता रही है कि यह बहुत ही खूबसूरत है जहां पर हमें पता चल रहा है कि यह --

सनसेट कैसे हो रहा हमें पेबल्स नजर आ रहे हैं हमें खेत नजर आ रहे हैं हमें माउंटेंस नजर आ रहे हैं हमें आसमान नजर आ रहा है।

हमें ट्रीज देखने को मिल रहे हैं हमें लीव्स देखने को मिल रहे--

फुटपाथ देखने को मिल रहा है हम देख सकते हैं यहां पर ये सब चीजें--

आप देख सकते हैं कि यह एक यू नो --

इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की गई है।

इसमें हमें नजर आ रहा है बहोत ही खूबसूरत चेयर --

हम्म यहां पर देख सकते हैं हमें यहां पर मिल रहा है।

पर्पल फ्लावर एंड पिंक फ्लावर है और उसमें लीव्स डले हुए हैं और दूसरा है पिंक कलर केक जिसमें--

इस पिक में हम बता सकते हैं कि एक ऐसी पिक है जो दिल को छु लेने वाली पिक है।

देख सकते हैं यहां पर ट्रीज भी हमें मिल जा मिल जाएगी हमें प्लांट्स भी मिल रहे--

हमें आपको लगता है कि इस पिक में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें--

येलो कलर रेड कलर पर्पल कलर --

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं सोफों पे ऑरेंज कलर सोफों --

इस पिक में हम्म देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत पि--

जहां पर हम देख रहे हैं कि यह एक हांडास--

यहां पर हम इस पिक में बता सकते हैं कि यह एक--

जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं।

ब्रिनजल कलर के पर्पल कलर की बेडशीट लगी हुई है।

वाइट कलर का मैट्रेस है आप देख सकते कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है।

इस पिक में मै देख रही हूं यहां पर हमें मिल रहा है।

हमें डेस्क दिखेगा जो कि शीशे का बना है।

यह जो पिक्चर है यह बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है--

एक बहुत ही अच्छा वेव महिलाएं पुरुष--

हमें वहां पर एक फैन भी दिखाई दे रहा है डोर भी दिखाई दे रहा है।

ये वाइट कलर के वर्ड्स से बी_सी_आई लिखके है कोचिंग सेंटर येलो कलर --

यहां पर चेयर्स भी आपको मिलेगी ब्लैक कलर की जो कि आपस में जॉइनड है।

आप देख सकते हैं यहां पर लोग भी बैठे हुए हैं ये स्टॉप --